शाम का मौसम है वहां पे एक मंदिर है और वहां पे बहोत सारे लोग जमा हुए हैं।

कुछ बातचीत करते हुएं दिखाई दे रहें हैं और एक लड़का नीचे बैठा हुआ हैं।